उनके ऊपर एक बोतल रखी है और एक घड़ी भी लगी है।

कुछ लड़के दुकान के पास हैं कुछ हरे भरे पेड़ हैं।

और वहां व्हाइट कलर की कार खड़ी है और पेड़ भी है।

ये एक कम्पुटर सेंटर है जिसमें बोहोत सारी कुर्सियां रखी हैं।

और उनके आगे कुछ काउंटर बने हैं।

और कुछ नीचे लाइट भी रखी हुई है।

और बाहर शीशे की खिड़की लगी हुई है।

और कुछ पर्दे भी लगे हैं। लाइट भी लगी है।

और कुछ लिचिया भी बनी हुई है जो अभी जल नहीं रही है।

और ऊपर एक बोर्ड लगा है इस पर लिखा है स्टेट बैंक ए_टी_एम --

एक लेडीज के हाथ में गिटार है और आदमी के हाथ में ढोलक है।

जो लोहे का है और नीचे कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है।

और कुछ शीशे की फिटिंग बनी है।

जिन में कुछ फोन रखे हैं और सामान भी रखा है।

और बाहर बहोत सारे जगले लगे हुए हैं।